यहा पे एक नीला आकाश दिखाई दे रहा हे पीछे कुछ पहाड़ी दिखाई दे रही हे यहा पे एक पुल दिखाई दे रही हे जिसपे कुछ जालिया लगी हुई हे सामने एक दो रोड दिखाई दे रहे हे जो सीधी खड़ी हुई हे।

यहाँ पे सफेद कलर की टाइल्स है रेड कलर की पट्टी लगी हुई है जिसके पीछे एक मॉनिटर लगा हुआ हे जहाँ पे कुछ चल रहा है।

ओर यहाँ पे कुछ व्यक्ति तबला बजा रहे हैं जिसके सामने एक माईक रखा हुआ हे।

ओर यहाँ पे नीला आकाश दिखाई दे रहा हे पीछे की पहरी हरी पेड़े दिखाई दी रही हैं छोटा घर भी हे।

जिसके ऊपर कुछ गुलदस्ते रखे हुए हे उसके पीछे बेठने वाली कुछ कुर्सियां रखी हुई हे ।

और यहां पे कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं यह कुछ ढलान मे है और यह सफेद कलर के मकान का पैंट है ।

यहां पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग अपने सिर मे कुछ पहने हुए हैं कुछ लाल कलर की टोपी और मुफ़लर है और पीछे एक स्टेज पे डांस चल रहा है।

ऊपर एक पंखा रखा हुआ है यह छोटा है और बगल में एक कैची रखी हुवी है उसके बगल एक पेन रखी हुवी है यहाँ पे शीशे का कुछ बना हुआ है जिसके अंदर कुछ सामने रखी हुवी है।

यहां पे एक पेड़ दिखाई दे रहा हे जिसपे बहुत सारी हरी हरी पत्तिया लगी हुई हे पेड़ के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है जो ग्रीन कलर की है। नीचे एक दिखाई दे रही है।